ये एक चट्टान सी बनी हुई है बहुत बड़ी और नीचे साइड एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने फोन लिया हुआ है और पीछे साइड एक आदमी खड़ा हुआ है जिसने ब्लू जींस और रेड टी शर्ट पहनी हुई है।

कला का बोर्ड लगा हुआ है और यहां पे लाइटिंग हो रही है इवनिंग का टाइम है एक ऑटो रिक्शा जा रही है।

यह एक रूम का पिक है यहां पे स्टैंड रखा हुआ है पीछे कर्टेनस लगे हुए हैं।

ऊपर ऐसी की मशीन लगी हुई है और साइड में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं।

सामने बहुत बड़ा गार्डन है जहां पे छोटी छोटी गांस लगी हुई है।

जी एक रिसेप्शन का पिक है यहां पे बाहर टेबल रखी हुई है उसके ऊपर एक शोकैस रखा हुआ है साइड में बहुत सारी चेयर्स रखे हुए हैं जो ब्लू कलर की है और --

ये एक बहुत बड़ा रोड सा बना हुआ है और साइड में गार्डन सा बना हुआ है जिसमें बहुत सारे पेर लगे हुए हैं दिन का टाइम है आसमान दिखा है और साइड में रोड के किनारे भी पेड़ लगे हुए हैं।

ये बहुत बड़ा ऑफिस सा बना हुआ है और यहां पे बहुत छोटी छोटी वुड की शेल्फस बनी हुई हैं और डिवाइड किया हुआ है रूम्स ऊपर फैन लग रहा है नीचे एक टेबल और चेयर रखी हुई है उसपे ब्लैक कलर का हेलमेट रखा हुआ है।

ये फेडरल बैंक ए_टी_एम का बोर्ड लगा हुआ है नीचे ए_टी_एम मशीन रखी हुई है और साइड में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं एक आदमी बाहर खड़े हो के उसकी पिक ले रहा है।

ऊपर हेलमेट रखा हुआ है एक आदमी अंदर जा रहा है बैग लेके और एक आदमी आ रहा है बाहर और एक आदमी साइड में खड़ा हुआ है।

ये मेट्रो स्टेशन का -- सीन है यहां पे लाइट का बोर्ड लगा हुआ है साइड में बिल्डिंग्स दिख रही है और पीछे साइड ग्रीन कलर के प्लांट्स लगे हुए हैं ऊपर लाइटें लगी हुई है दिन का टाइम है।

ये एक ही डेकोरेशन हो रखा है यहां पे बहुत सारे सोफे पड़े हुए हैं और रेड और वाइट कलर के और रेड कलर की टेबल लगी हुई है रेड कलर की कर्टनस लगे हुए हैं लाइटिंग हो रखी है उनके ऊपर फ्लावरस लगे हुए हैं। ओर साइड में म्यूजिक --

ये मधुदेव शाला न्यूट्रिशन सेंटर का पोस्टर लगा हुआ है मोटापा ची घटाए वजन बढ़ाएं अ--

ये एक बहुत बड़ा एरिया सा बना हुआ है ग्राउंड सा इसके ऊपर एक चकुत्रे पे शेड लगी हुई है और सामने -- लाइट का पोल लगा हुआ है जिसपे वाइरिंग जा रही है।

ये बहुत बड़ी शॉप का रूम है यहां पे बहुत सारे -- शेल्फ में सामान रखा हुआ है ऊपर टेबल फैन फैन लगा हुआ है नीचे बोर्ड लगा हुआ है एक बार में अंदर खड़ा हुआ है बाहर सोफे पे सामान रखा हुआ है कुशन रखे हुए है।

ये एक शॉप है मिरर की यहां पे मिरर लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े ।

-- ये ऑप्टिमम न्यूट्रीफिट का बोर्ड लगा हुआ है जो है विपिन नगर में लिखा हुआ है ऐसा उसके नीचे वॉल पे पेंटिंग बन रही है डबल स्टोर बिल्डिंग बनी हुई है साइड में लाइट का पोल लगा हुआ है और उसमें बोहोत सारी वाइरिंग जा रही है।

ये एक रूम की पिक है यहां पे बहुत सारे -- टेक्स्टटॉक रखे हुए हैं साथ में माउस लगा हुआ है बोर्ड लगे हुए है सब अलग-अलग डेस्कटॉप पे -- एक टेबल पे एक डेस्कटॉप रखा हुआ है वाइट कलर का पेंट हो रखा है।